यहां पे टू व्हीलर गैरेज है एक गैरेज वाला लड़का कुछ --

एक लड़का एक लड़की लड़की के बाजू में एक लड़की --

बाद में कुरकुरे चिप्स बूस्ट हार्लिक्स शैंपोस --

एम_एल_ए का कार खड़ा है स्कॉर्पियो सेंट्रो फेरचूनर सब कुछ कार खड़ा है पांच --

झाड़ का झाड़ वेरेटी वैरायटी झाड़ रखा है इधर पे कुछ सिंबल रखा है लड़के लोग --

यहा पे कुछ फुट पाठ पे दुकान है फुट पाठ की दुकान पे कुछ एक लड़का --

इधर पे मुर्गी चिकन का दुकान है मुर्गी का दुकान है।

दुकान के सामने एक लड़का तो दुकान की डिक्की ओपन करके रेड कलर बाइक का कुछ सामान देख रहा है।

राइट साइड में भी खंभा लेफ्ट साइड में खंभा एक ऑटो आ रहा है एक इधर दोनों कार आ रा ए।

पड़ा हुआ है इधर पे एक लड़का बैठा हुआ है उधर पे सब लोग एक लड़का एक --

यह तो एक कॉलेज का एंट्रंस है स्टेप बाय स्टेप एंट्रंस है चारों तरफ झाड़ है।

जा रहे हैं कोई भी आदमी लोग तो नहीं आ रहे हैं इधर --